यहाँ पे कुछ भाले नज़र आरहे है यहाँ पे काफी सारे एन्श्येंट टाइम के आव्ज़ार दिखाई देरहे है यहाँ पे कुछ बोर्ड लगेहुवे है बोर्ड पर कुछ लिखा दिखाई देरही है.